यहां पर मुझे एक पहाड़ जैसा नजाया नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े बड़े पत्थर है।

सड़क जैसा नजारा दिखाई दे रहा है और उसके आगे ही एक पेट्रोल पंप है एच_पी नाम से --

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ऐसे लग रहा है अभी ये बंद हो गया है।

यहां पर ये कुछ भीड़ जैसा माहौल दिखाई दे रहा है जैसे कोई बड़ा गांव के अंदर--

यहां पर एक कुछ स्कूल जैसा माहौल दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये कुछ बड़े समंदर जैसा माहौल दिखाई दे रहा है जो काफी दूर दूर तक लंबा है बहोत ज्यादा।

सामने दो आदमी खड़े हुए हैं जो अपनी नाव पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं और उनके पीछे दो नाव दिखाई दे रही है।

कर रहा है और सामने दो टेबल पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उसके आगे काफी सारे लोग घुमते हुए दिखाई दे रहे हैं एक कैलेंडर भी दिखाइ दे रहा है।

यहां पर मुझे एक सामने कैमल फार्म दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे जो ऊंट हैं वो चारा खा रहे हैं।

अ उसके पास में काफी सारी हरी मिर्च पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने कोई देवता की मूर्ति है।

और एक बैग भी पास में पड़ा हुआ है।

अलग अलग और सामने चार से पांच जो है वो पोस्टर भी लगाए हुए हैं जो के--